ये तस्वीर चर्च की है जिसको फेस्टिवल के मौके पर बहुत ही कलरफुल लाइट्स के साथ --

यह तस्वीर एक विद्यालय की है । इस विद्यालय की बोहोत बड़ी बिल्डिंग है जिसका रंग लाइट येल्लो है ।

यहां पर गाड़िया मोटरसाईकिल ऑटो रिक्शा और भी बहोत सारी गाडियाँ हैं और बहोत सारे लोग हैं जो खरीदारी कर रहे हैं ।

ये तस्वीर एक वाटरपार्क की है जहां पर एक बच्चा पानी में स्विमिंग कर रहा है ।

ये तस्वीर एक समुन्दर के किनारे ली गयी हैं । जहाँ पर कुछ लोग सेल सपाटे के लिए आये हैं ।

इस पारक में एक राईनोसोरौस की मूर्ति बनी हुई है। कुछ बच्चे उस मूर्ति पर चढ़कर तस्वीर ले रहे हैं। कुछ उसे छू रहे हैं।